लिबर ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस विशेषता और ऑटोकरेक्ट विशेषता का इस्तेमाल करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे फाइंड और Replaceखोजने और बदले में रखना
स्पेलचेक वर्तनी की जाँच AutoCorrectस्व सुधार यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNUलिनक्स और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
चलिए अब राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस बटन के बारे में जानकर शुरू करते हैं
यह टेक्स्ट के लिए खोजता है औरया पूरे डॉक्युमेंट में टेक्स्ट को बदलता है
चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसके बारे में और अधिक जानते हैं
अतः सबसे पहले अपनी resumeओडीटी फाइल खोलते हैं
अब एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करें
इसके बदले में स्टैन्डर्ड टूल बार में बटन पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स सर्च फोर और एक रिप्लेस विथ फील्ड में दिखता है
आप जिस टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं उसको सर्च फोर फील्ड में प्रविष्ट करें
उदाहरणस्वरुप हमें डॉक्युमेंट में हर वो स्थान जहाँ रमेश लिखा है वो खोजना है
अतः सर्च फोर फील्ड में रमेश टाइप करें
अब फाइंड अल्ल पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्युमेंट में हर वो स्थान जहाँ रमेश लिखा है वो चिन्हांकित हो गया है
आप इसे जिस टेक्स्ट से बदलना चाहते हैं उसे रिप्लेस विथ फील्ड में लिखें
उदाहरणस्वरुप हम अपने डॉक्युमेंट में रमेश को मनीष से बदलना चाहते हैं
अतः हम रिप्लेस विथ टैब में मनीष टाइप करते हैं
अब रिप्लेस अल्ल पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्युमेंट में हर जगह रमेश मनीष से बदल चुका है
डायलॉग बॉक्स के बिलकुल नीचे हम मोरे आप्शंस बटन देखते हैं
इस पर क्लिक करें
मोरे आप्शंस बटन में विशिष्ट फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन्स की एक सूची होती है
इसमें ऑप्शन्स होते हैं जैसे बैकवार्ड्स जोकि टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की ओर खोजता है करेंट सिलेक्शन ओनली जोकि टेक्स्ट को टेक्स्ट के एक चुनित भाग में खोजता है
इसमें अन्य एडवांस्ड ऑप्शन्स होते हैं जैसे रेग्यूलर एक्सप्रेशंस सर्च फोर स्टाइल्स और कुछ अन्य
यहाँ डायलॉग बॉक्स के दायीं ओर तीन अन्य ऑप्शन्स हैं
यह हैं attributesफॉर्मेट और नो फॉर्मेट
यह उपयोगकर्ता को विविध प्रकार के एडवांस्ड फाइंड खोज और रिप्लेस के ऑप्शन्स प्रदान करता है
चलिए इसे बंद करते हैं
हम इनके बारे में और ज्यादा अधिक एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में जानेंगे
फाइंड एंड रिप्लेस विशेषता के बारे में सीखने के बाद हम अब सीखेंगे कि लिबरऑफिस राइटर में स्पेलचेक का इस्तेमाल करके वर्तनी कैसे जाँचे
स्पेलचेक का उपयोग पूरे डॉक्युमेंट या टेक्स्ट के चुनित भाग में वर्तनी त्रुटियों को जाँचने के लिए किया जाता है
स्पेलचेक कर्सर की वर्तमान स्थिति से शुरू होता है और डॉक्युमेंट या चुनित भाग के अंत तक बढ़ता है
आप फिर डॉक्युमेंट के प्रारंभ से वर्तनी जाँच जारी रख सकते हैं
स्पेलचेक शब्दों में वर्तनी त्रुटियों को देखता है और आपको एक अज्ञात शब्द को उपयोगकर्ता के शब्दकोश में जोड़ने का ऑप्शन देता है
चलिए देखते हैं कि यह कैसे लागू होता है
प्रत्येक भाषा के लिए स्पेल चेक विशेषता भिन्न होती है
उदाहरणस्वरुप मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आप्शंस पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स जो दिखाई देता है उसमें लैंग्वेज सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें और अंत में लैंग्वेज पर क्लिक करें
यूजर इंटरफेस ऑप्शन के अंदर यह सुनिश्चित कर लें कि डिफॉल्ट ऑप्शन इंग्लिश उसा निर्धारित है
उसके नीचे लोकेल सेटिंग फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर इंग्लिश उसा ऑप्शन पर क्लिक करें
अब डिफॉल्ट लैंग्वेज फोर डॉक्यूमेंट्स हैडिंग के अंदर वेस्टर्न फील्ड में डिफॉल्ट भाषा इंग्लिश इंडिया निर्धारित है
चूँकि सम्भवतः इंग्लिश इंडिया के पास वो शब्दकोष न हो जिसकी अपेक्षा स्पेल चेक को है हम भाषा को इंग्लिश उसा में बदल देंगे
अतः वेस्टर्न फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और इंग्लिश उसा ऑप्शन पर क्लिक करें
अंततः ओक बटन पर क्लिक करें
अतः अब हम देखने के लिए तैयार हैं कि कैसे स्पेलचेक विशेषता इंग्लिश उसा भाषा के लिए कार्य करती है
स्पेलिंग एंड ग्रामर विशेषता को इस्तेमाल करने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि ऑटोस्पेलचेक ऑप्शन सक्षम है
अतः टूलबार में ऑटोस्पेलचेक बटन पर क्लिक करते हैं यदि यह चालू नहीं है
अपनी resumeओडीटी फाइल के अंदर मदर्स आक्यूपेशन में हम वाक्य में हाउसवाइफ के लिए ह्यूजवाइफ गलत वर्तनी टाइप करेंगे और स्पेसबार दबाएँ
आप देख सकते हैं कि गलत शब्द के ठीक नीचे एक लाल रेखा प्रदर्शित होती है
अब कर्सर को शब्द ह्यूजवाइफ पर रखें और स्टैन्डर्ड टूल बार में स्पेलिंग एंड ग्रामर आइकॉन पर क्लिक करें
अतः हम शब्द को नोट इन डिक्शनरी फील्ड में देख सकते हैं
गलत वर्तनी का शब्द लाल में चिन्हांकित हुआ है और यहाँ सजेशंस बॉक्स में सही शब्द के लिए अनेक सुझाव दिए हैं जहाँ से आप सही शब्द चुन सकते हैं
सजेशन बॉक्स में शब्द हाउसवाइफ पर क्लिक करें और फिर चंगे बटन पर क्लिक करें
छोटा सा डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है इसमें ओक पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि डॉक्युमेंट में अब सही वर्तनी प्रदर्शित हो रही है
चलिए बदलावों को अन्डू करते हैं
चलिए अब एक और ऑटोकरेक्ट नामक स्टैन्डर्ड टूल बार के बारे में सीखते हैं
ऑटोकरेक्ट विशेषता स्पेलचेक का इक्स्टेन्शन विस्तार है
ऑटोकरेक्ट मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो में मिलता है
जैसे ऑप्शन्स आप निर्धारित करते हैं उसके अनुसार ऑटोकरेक्ट अपने आप से फाइल को फॉर्मेट करता है
यह ऑप्शन्स ऑटोकरेक्ट आप्शंस पर क्लिक करके चुने जाते हैं
ऑटोकरेक्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा
ऑटोकरेक्ट विशेषता अपने आप से जो टेक्स्ट आप लिखते हैं उसे सही करता है
आप्शंस टैब में जैसे आप ऑप्शन्स चुनते हैं उसी के अनुसार सुधार होते हैं
यहाँ पर अनेक ऑटोकरेक्ट ऑप्शन्स होते हैं जैसे डिलीट स्पेसेज एटी थे इंड एंड बिगिनिंग ओएफ पैराग्राफ इग्नोर डबल स्पेसेज और कई अन्य
अतः चलिए एक उदाहरण के साथ देखते हैं कि वे कार्य कैसे करते हैं
अपनी रिज्यूम फाइल में हम कुछ स्थानों पर शब्दों के बीच सिंगल स्पेस और अन्य स्थानों पर शब्दों के बीच डबल और ट्रिपल स्पेस टाइप करेंगे
अब पूरे टेक्स्ट को चुनें
मेन्यू बार में फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें
फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑटोकरेक्ट पर क्लिक करें और अंततः सब मेन्यू में ऑटोकरेक्ट आप्शंस पर क्लिक करें
आप्शंस टैब पर क्लिक करें
अब इग्नोर डबल स्पेसेज को चुनें और ओक बटन पर क्लिक करें
अगला टेक्स्ट जो आप टाइप करेंगे आपको अपने आप शब्दों के बीच डबल स्पेस रखने की अनुमति नहीं देगा
चलिए कर्सर को मनीष नाम के आगे रखते हैं
अब कीबोर्ड पर स्पेस बारस्पेसबार दो बार दबाएँ
आप देख सकते हैं कि कर्सर केवल एक स्थान बढ़ा है और टेक्स्ट में दो डबल स्पेस की अनुमति नहीं दे रहा है
एक सिंगल स्पेस के बाद कुलनाम टाइप करें कुमार ऑटोकरेक्ट में एक शब्द को या एक संक्षिप्तीकरण को अधिक सार्थक या लम्बे टेक्स्ट के साथ बदलने का सामर्थ्य भी है
यह लम्बे शब्दों के लिए संक्षिप्त रूप बनाकर टाइपिंग करने की मेहनत को बचाता है
उदाहरणस्वरुप हमारी resumeओडीटी फाइल में कुछ शब्दों के समूह या शब्द हो सकते हैं जो डॉक्युमेंट में बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं
उन वाक्यों या शब्दों को बार बार टाइप करना जटिल हो सकता है
चलिए मानिए कि हम अपने डॉक्युमेंट में टेक्स्ट थिस इस आ स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बार बार टाइप करना चाहते हैं
तब हम एक संक्षिप्तीकरण बना सकते हैं जोकि सीधे हमारे आवश्यक टेक्स्ट में बदल जाएगा
अतः चलिए देखते हैं कि कैसे एक संक्षिप्तीकरण जैसे एसटीपी अपने आप ही स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट में बदलता है
अब मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ऑटोकरेक्ट ऑप्शन पर जायें और फिर ऑटोकरेक्ट आप्शंस पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें रिप्लेस टैब पर क्लिक करें
जाँचिये कि हमारी चुनित भाषा इंग्लिश उसा है
अब रिप्लेस फील्ड में चलिए संक्षिप्तीकरण जिसे हम बदलना चाहते हैं एसटीपी टाइप करते हैं
विथ फील्ड में हम बदला हुआ टेक्स्ट स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टाइप करते हैं
डायलॉग बॉक्स में न्यू बटन पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि यह बदलाव सूची में प्रविष्ट हो गया है
अब ओक बटन पर क्लिक करें
अब जैसे ही हम टेक्स्ट लिखते हैं थिस इस आ एसटीपी और स्पेसबार दबाते हैं
आप देखेंगे कि एसटीपी संक्षिप्तीकरण स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट में बदला जा चुका है
यह विशेषता बहुत ही लाभदायक है जब एक ही टेक्स्ट किसी डॉक्युमेंट में कई बार दुहराया जाता है
चलिए बदलावों को अन्डू करते हैं
अब हम लिबर ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने इनके बारे में सीखा हैः फाइंड एंड रिप्लेस स्पेल चेक ऑटोकरेक्ट व्यापक नियत कार्य
राइटर में निम्न टेक्स्ट लिखें थिस इस आ न्यू documentथे डॉक्यूमेंट डील्स विथ फाइंड एंड रिप्लेस
अब अपने टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट शब्द को खोजें और फाइल शब्द से बदलें
अपने डॉक्युमेंट में शब्द टेक्स्ट को वर्तनी ट एक्स ट से बदलिए
टेक्स्ट में वर्तनी को सही करने के लिए स्पेलचेक विशेषता का इस्तेमाल करें
इंग्लिश को अपनी डिफॉल्ट भाषा के रूप में इस्तेमाल करें
ऑटोकरेक्ट विशेषता का इस्तेमाल करके थिस इस लिब्रियोफिस राइटर टेक्स्ट के लिए एक संक्षिप्तीकरण तल्व बनायें और इसका कार्यान्वयन देखें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो को देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद